यहां पर मूली रखी है कद्दू गोभी गाजर पालक रक्खा हुआ है।

और उस पर फल लखे हुए हैं संतरे रखे --